और ये ट्रेन का और यहां पे मालगाड़ी का लोग यहाँ पर बैठे हैं। मालगाड़ी आएगी और यहाँ पर लोग लोड करेंगे।

काफी अच्छे से सजावट किया गया है। यहाँ यहाँ दिख रही है। ये काफी अच्छी रेस्ट्रॉन्ट है। के लिए --

डोरियो के द्वारा मतलब रस्सी के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है। और ये काफी अच्छा है। इसमें लेकिन आदमी को इनके हाथ या फिर कुछ जाने के कुछ अथी --

शहर का फ्लाईओवर है। के उप्पर से ये फ्लाई ओवर जाता है। आता है। जाता है --